उबंटू डेस्कटॉप के इस स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल का इस्तेमाल करके हम ग्नोम परिवेश पर उबंटू डेस्कटॉप से परिचित होंगे
इसके लिए में उबंटू 1010 का इस्तेमाल कर रही हूँ
आप जो अब देख रहे हैं वह उबंटू डेस्कटॉप है
आप मैन मेन्यू को बाएँ हाथ के ऊपरी तरफ के कोने में देख सकते हैं
इसे ओपन करने के लिए आप ALT फ़1 प्रेस कर सकते हैं या एप्लीकेशन पर जाएँ और उस पर क्लिक करें
सारे इन्स्टाल हुए यानि संस्थापित एप्लीकेशंस वर्गीकृत ढंग से एप्लीकेशन मेन्यू में मौजूद हैं
चलिए इस एप्लीकेशन मेन्यू में कुछ महत्वपूर्ण एप्लीकेशन से परिचित होते हैं
तो एप्लीकेशन gt एक्सेसरिस gt केल्क्युलेटर पर चलिए
केल्क्युलेटर अंकगणित वैज्ञानिक तथा आर्थिक गणना करने में मदद करता है
चलिए इसे ओपन करते हैं केल्क्युलेटर पर क्लिक करें
अब कुछ सरल गणना की कोशिश करते हैं
5 8 टाइप करें और चिन्ह प्रेस करें
चिन्ह दबाने के बजाय आप इंटर की भी टाइप कर सकते हैं
क्लोज बटन प्रेस करके केल्क्युलेटर से बाहर आएँ
अब एक दूसरे एप्लीकेशन को देखते हैं
इसके लिए एप्लीकेशंस पर जाएँ और फिर एक्सेसरिस पर जाएँ
एक्सेसरिस में टेक्स्ट एडिटर ओपन करें उस पर क्लिक करें
तो जो अब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वह जिएडिट टेक्स्ट एडिटर है
मैं यहाँ कुछ टेक्स्ट टाइप करती हूँ और उसे सेव करती हूँ
टाइप करें हेल्लो वर्ल्ड h e l l ओ w o r l डी
उसे सेव करने के लिए में CTRL एस प्रेस कर सकती हूँ या फाइल पर जाएँ और सेव पर क्लिक करें
चलिए में फाइल पर जाती हूँ और फिर सेव करती हूँ
अब एक छोटा डायलॉग बाक्स आता है
यह फाइल नाम तथा स्थान जहाँ सेव करना है उसके लिए पूछता है
तो मैं नाम टाइप करती हूँ helloटीएक्सटी और स्थान के लिए डेस्कटॉप चुनती हूँ और सेव बटन पर क्लिक करें
तो इसे बंद करें
अब आप डेस्कटॉप पर helloटीएक्सटी फाइल देख सकते हैं
तो हमारी टेक्स्ट फाइल सफलतापूर्वक सेव हुई है
इस फाइल पर डबल क्लिक करके ओपन करते हैं
हमारी टेक्स्ट फाइल हमारे लिखे हुए टेक्स्ट के साथ ओपन हुई है
इन्टरनेट पर जिएडिट टेक्स्ट एडिटर पर कई जानकारी हैं
इस विषय पर wwwspoken tutorialorg पर स्पोकन ट्यूटोरियल्स भी होंगे
जो है टर्मिनल
तो चलिए वापस चलते हैं एप्लीकेशंस gt एक्सेसरिस और फिर टर्मिनल
टर्मिनल को कमांड लाइन कहते हैं क्योंकि यहाँ से आप कंप्यूटर को आदेश दे सकते हैं या कमांड कर सकते हैं
वास्तव में यह गुई से भी ज्यादा सशक्त है
तो चलिए टर्मिनल पर एक सरल कमांड टाइप करते हैं
तो एलएस टाइप करें और एंटर प्रेस करें
आप देख सकते हैं यह वर्तमान डाइरेक्टरी की सारी फाइल्स तथा फोल्डर्स बताता है
तो यहाँ यह होम फोल्डर से सारे फाइल्स और फोल्डर प्रदर्शित करता है
होम फोल्डर क्या है यह हम बाद में इस ट्यूटोरियल में देखेंगे
हम टर्मिनल पर अब और समय नहीं बिताएंगे
wwwspokentutorialorg पर लिनक्स स्पोकन ट्यूटोरियल्स में टर्मिनल कमांड्स को अच्छी तरह से समझाया गया है
टर्मिनल को बंद करें
अब दूसरे एप्लीकेशन पर चलते हैं जो है फ़ायरफ़ॉक्स वेब ब्राउसर उसे ओपन करते हैं
इसके लिए एप्लीकेशंस पर जाएँ फिर इन्टरनेट gt फ़ायरफ़ॉक्स वेब ब्राउसर
इस पर क्लिक करें
वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस करने के लिए फ़ायरफ़ॉक्स का प्रयोग होता है
अब आप देख सकते हैं कि फ़ायरफ़ॉक्स ओपन हुआ है
चलिए अब जीमेल की साईट पर जाते हैं
उसके लिए आप एड्रस बार पर जाएँ या फिर फ़6 प्रेस करें
मैं अब फ़6 प्रेस कर रही हूँ
जी हां160
मैं एड्रस बार में हूँ और अब मैंने एड्रस बार को क्लिअर करने के लिए बैकस्पेस प्रेस किया है
मैं wwwgmailcom टाइप करती हूँ
जैसे ही मैं टाइप करती हूँ फ़ायरफ़ॉक्स कुछ सुझाव देता है
आप इनमें से कुछ को चुन सकते हैं या फिर पूरा एड्रस टाइप करें और एन्टर प्रेस करें
फ़ायरफ़ॉक्स शायद सीधे वेबसाईट पर ले जाएगा या फिर यह लॉगिन और पासवर्ड मांगेगा
चलिए अब यूज़रनेम और पासवर्ड टाइप करते हैं और फिर एंटर प्रेस करें
अब आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जीमेल वेबपेज ओपन हुई है
इसे बंद करते हैं और आगे बढ़ते हैं
अब ऑफिस मेन्यू पर चलते हैं एप्लीकेशंस gt ऑफिस
फिर आगे इस ऑफिस मेन्यू में हमारे पास ओपनऑफिस वर्ड प्रोसेसर स्प्रेडशीट और प्रेसेंटेशन है
इन सब पर इन्टरनेट पर काफी जानकारी है
हमारी वेब साईट पर भविष्य में इन सभी पर स्पोकन ट्यूटोरियल होंगे
अब हम साउंड एंड विडियो मेन्यू को देखते हैं
इसके लिए एप्लीकेशन पर जाएँ फिर साउंड और विडियो पर
इसमें एक महत्त्वपूर्ण एप्लीकेशन है जो है मूवी प्लेयर
यह विडियो तथा गाने चलाने के लिए प्रयोग होता है
डिफॉल्ट रूप से यह ओपन फॉर्मेट विडियो को ही चलाता है
तो मैं एक सेम्पल फाइल को प्ले करती हूँ जो मेरे पेनड्राइव में है
अब पेनड्राइव को यूएसबी स्लोट में डालते हैं पेनड्राइव ओपन हुआ है
यदि यह ओपन नहीं होता है तो आप उसे डेस्कटॉप से एक्सेस कर सकते हैं
नीचे बायीं ओर पर एक आइकन है उसे क्लिक करते हैं
यदि हम उस पर क्लिक करते हैं यह सिर्फ डेस्कटॉप दिखाता है
यदि हम इस पर फिर से क्लिक करें तो यह डेस्कटॉप तथा साथ ही फाइल जो ओपन हुई है वह भी दिखाता है
हम विन्डोज़ की और डी दोनों को प्रेस करके भी डेस्कटॉप पर जा सकते हैं
कृपया ध्यान दें कि पहले के उबंटू वेर्ज़न्स में डेस्कटॉप पर जाने के लिए CTRL ALT डी का प्रयोग होता था
उपयोगकर्ता को इस वेर्ज़न्स के बदलावों को सँभालने के लिए तैयार रहना चाहिएअब विन्डोज़ की और डी प्रेस करते हैं
यहाँ आप देख सकते हैं कि आपका पेनड्राइव डेस्कटॉप पर उपस्थित है
इस पर डबल क्लिक करके इसे ओपन करते हैं
अब मैं एक मूवी फाइल को प्ले करने के लिए चुनती हूँ जो है ubuntuhumanityओजीवी यहाँ मेरी फाइल है इसे ओपन करने के लिए मैं इस पर डबल क्लिक करती हूँ
डिफॉल्ट रूप से यह मूवी प्लेयर में ओपन होता है
इसे क्लोज करते हैं
अब इस डेस्कटॉप पर कुछ और महत्त्वपूर्ण चीजें देखते हैं
इसके लिए अब प्लेसेस मेन्यू पर जाते हैं
इसमें हमारे पास होम फोल्डर है
इसे ओपन करते हैं
होम फोल्डर पर क्लिक करें
उबंटू में प्रत्येक उपयोगकर्ता का एक अलग होम फोल्डर होता है
हम कह सकते हैं कि होम फोल्डर हमारा घर है जहाँ हम अपनी फाइल्स तथा फोल्डर्स रख सकते हैं
जब तक हम आज्ञा न दें कोई उन्हें देख नहीं सकता
फाइल परमिशन पर अधिक जानकारी लिनक्स स्पोकन ट्यूटोरियल्स में मौजूद है जो wwwspoken tutorialorg पर उपलब्ध है
हमारे होम फोल्डर में हम दूसरे फोल्डर्स देख सकते हैं जैसे कि डेस्कटॉप डाक्यूमेंट्स डाउनलोड्स विडियो इत्यादि
लिनक्स में सब कुछ एक फाइल है
डेस्कटॉप फोल्डर पर डबल क्लिक करके उसे ओपन करते हैं
हम देखते हैं कि वही helloटीएक्सटी फाइल जो कि यहाँ टेक्स्ट एडिटर में सेव की थी
तो यह फोल्डर तथा डेस्कटॉप एक ही हैं
मैं इस फोल्डर को अब क्लोज करती हूँ
क्या आप डेस्कटॉप की यही थीम देखकर बोर नहीं हुए
चलिए इसे बदलते हैं
इसके लिए सिस्टम पर जाएँ फिर प्रेफरेंस फिर अपीयरेंस पर क्लिक करें
क्लियरलुक्स को चुनते हैं
जैसे ही आप क्लिक करते हैं आप अपनी मशीन पर बदलावों को देख सकते हैं
आप इसे अच्छे से देख सकते हैं डेस्कटॉप आइकन पर क्लिक करके जो कि बायीं ओर के कोने में है
इस आइकन पर फिर से क्लिक करके वापस फोल्डर्स पर चलते हैं
Themeथीम को देखिये जो भी आपको अच्छी लगे और फिर बाहर आने के लिए क्लोज़ बटन पर क्लिक करें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
इस ट्यूटोरियल में हमने उबंटू डेस्कटॉप मेन मेन्यू और अन्य आइकन्स जो उबंटू स्क्रीन पर नज़र आते हैं उनके बारे में सीखा